यह फोटो हल्की धुंधली नजर आ रही है तथा लाल लाल दिख रही है।

यहां एक आदमी दिखाई दे रहा है।

यहां काफी सारे लोहे की रेड रखी हुई है।

यहां पे तार भी नजर आ रही है यहां पे रोशनी नजर आ रही है।

यहां पे बहुत सारे डंबल भी रखे हुए हैं।

यहां पर बच्चों के खेलने के लिए कुछ लगाए गए हैं।

यहां पर हेल्थ केयर लिखा हुआ है।

ऊपर में अल्बेस्टर लगा हुआ है यहां काफी सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

यहां काफी बड़े बड़े पेड़ और पौधे नजर आ रहे हैं।

यहां काफी बड़े बड़े पेड़ और कुछ पौधे लगे हुए हैं यहां लोहे की बाउंड्री की हुई है।

यहां कैमरे भी लगे हुए हैं।

यहां जुर्माना पांच सौ लिखा हुआ है।

यहां एक खिड़की बना हुआ है जो कांच के गिलास की है।

यहां कुछ पत्ते भी गिरे हुए हैं यहां दरवाजा जैसे एक लोहे के उपकरण रखी हुई है।

यहां काफी सारे चेयर तथा टेबुल लगे हुए हैं।

कुछ पौधों पर गुलाब के फूल लगे हुए है।

यहां विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश मिटा लिखा हुआ--

आदमी सोने का लॉकेट पहना हुआ है।

यहां बहुत सारे आर्टिफिशियल फूल लगे हुए हैं।